यहां पर एक टीचर भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहोत--

यहां पर एक बैट भी रखा हुआ दिखाइ--

गुफा में बहोत सारे पहाड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर शीशे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक मंदिर भी लगा हुआ दिखाई--

दूसरे से बाते कर रहे है यहां पर एक लैपटॉप --

यहां पर बहुत सारे फूल भी दिखाई दे रहे है।

ये बिल्डिंग में बहुत सारे शीशे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग में पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत सारे --

साड़ी का कलर रेड कलर का दिखाई दे रहा है।

और बहोत सारे खंबे भी खड़े लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहोत सारी तार भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर शीशे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत सारे बच्चों का सामान भी दिखाई दे रहा--

सामने एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में घर भी दिखाई दे रहा है घर का कलर येलो कलर का दिखाई दे रहा है।

वाटिका में बहोत सारी कलर भी दिखाई दे रहे हैं वाटिका में पिंक कलर भी दिखाई दे रहा है।

हाल भी दिखाई दे रहा है। यहां पर चूड़ियां चूड़ियां की बिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है आसमान का कलर ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा--

सामने एक देवी ज्वेलर्स दिखाई दे रहा है।

पर कुछ शीशे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर गाड़ियों का कलर वाइट कलर का दिख--

यहां पर कुर्सियों पर कुछ लोग भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर--

शोरूम में बहुत सारी स्कूटी भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।